जहाँ पर आसपास बहुत सारे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक जगह है उस जगह पर बोहोत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।